पुल के नीचे थोड़ी सी नदी देखी जा सकती है।

और बहोत सारे लकड़ी के घर देखे जा सकते हैं।

छोटे छोटे हरे हरे पत्ते भी देखे जा सकते हैं।

यहां घर में बनाए जाने वाले अनेक प्रकार के चीज मिले जाते हैं।

घर को साफ करने वाला ब्रश इत्यादि भी मिल जाता है।

यहां पे हम देख सकते हैं कि शर्तों को रैक में सजा के रखा गया है।

क्योंकि टेबल पे कुछ बच्चों का खिलौना रखा गया है।

नदी के ऊपर एक पूल बना है।

यहां हम झील भी देख सकते हैं।

यहां कुर्सी और टेबल का रंग सफेद है।

यहां बौद्ध भगवान की प्रतिमा दो देखी जा सकती है।

यहां दूर दूर तक हरियाली देखी जा सकती है।

इस पिक्चर में केले के पौधे भी देखे जा सकते हैं।

यहां दूर दूर तक पहाड़े देखे जा सकते हैं।

यहां बहोत सारे चट्टान भी देखे जा सकते हैं।

गाड़ियों में बोलेरो भी शामिल है।

कुछ जोतने वाले यंत्र भी लगे हुए देखे जा सकते हैं।

यहां टायर में हवा भरने वाली उपकरण भी देखी जा सकती है।

यहां पे दो चार घर भी देखे जा सकते है।